की वॉल व्हाइट एंड ग्रीन से पेंटेड है और इसे लाइट की मदद से डेकोरेट भी किया गया हैं।

इस तस्वीर में दिखाया गया है की स्विम करने के अलग अलग तरीके और अलग अलग इन्स्ट्रूमेंट्स हैं।

जिन्हें पिंक रंग के वस्त्र पहनाये हुए है और बहोत अच्छे से सजावट की गयी है।

इस तस्वीर में एक पार्क को दिखाया गया है जहाँ स्विमिंग करने के लिए एक पोंड है।

बहोत बड़े पेड़ भी हैं और झरना में बह रहा है।